पीछे पर्दे लगे हुए है सामने फूलो से गेट को सजाया हुआ है आगे की तरफ रेड कार्पेट --

इसकी सटर मजबूत बनी है जो की सीमेंट से बनी हुई है।

यह तस्वीर किसी शादी हॉल की है जहां पर बहुत ही सुंदर तरह से स्टेज सजाया हुआ है ।

पेड़ों की पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही हैं और यहां पर पेड़ों की डालियां भी दिखाई दे रही हैं सामने एक लाल कलर से बाउंड्री बनी हुई है।

आगे स काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

कही कही पर पानी सूखा हुआ है जिसके वजह से पत्थर नज़र आ रहे है इसके साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी जंगल की दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी सारे बरगद के पेड़ लगे नज़र आ रहे हैं।

सामने से एक रोड भी गया हुआ हे जोकि इंसानो के गुजरने के नीए है ओर ये पेड़ काफी लम्बे-लम्बे हैं।